यह एक खेल खुद का मैदान है जिसमें किसी स्कूल की खेल प्रतियोगिता हो रही हैं।

ए_टी_एम दिख रहा है कुछ बाइक नीचे लगी हुई हैं एक ऑटो भी जाते हुए दिखाई दे रहा है।

वो कपड़ा अंडर जाम वाली है।

ऊपर में एक और बिल्डिंग दिख रही है जिसमें शीशा लगी हुई है।

खाने की सामग्री भी दिखाई दे रही है इसमें थ्री पिन --

यह यहां पे कुछ ये पेड़ है और उसके बगल में घर इसके दीवाल पे ब्लैक रंग का कुछ लगा--

और यहां पे दीवाल पे कुछ पेन की डिजाइन भी है और पे ब्लैक रंग के चेयर पे कुछ ए_सी और फैन दोनों दिखाई दे रहा है।

दो तीन कुर्सी रखी हुई है एक स्टूल रखे हुए हैं।

जिसपे बाल्टी रखी है बाल्टी लाल कलर की है सामने एक शीशा लगा हुआ है।

बेड के ऊपर तीन पिलो रखे हुए हैं बेड के साइड में एक शीशा दिखाई दे रहा--